इस चित्र में एक लड़की दिख रही है।

सामने दो कार खड़ी हैं।

इस चित्र में कुछ गाड़ियां दिख रही हैं।

यहाँ पर नीली तिरपाल दिख रही है।

पीछे लोहे का दरवाजा बना हुआ है।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

सभी लड़कियों ने चेक्स साड़ी पहनी है।

एक नीला डस्टबिन दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में जिम दिखाई दे रहा है।

सामने एक छूमर दिखाई दे रहा है।

जिनमें हमें अंगुर और केले दिख रहे हैं।

लाइनिंग वाली टीशर्ट पहनी हुई है।

कुछ पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

काफी सारे पेड़लगे हुए हैं।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

काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं।

इस चित्र में एक नन खड़ी है।

काफी सारे कंबल दिख रहे हैं।

कुछ हमें बादल दिख रहे हैं।

कॉफी की दुकान दिख रही है।

पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

फूलों की माला दिख रही है।

इस चित्र में हमें एक होटल रूम दिख रहा है।

आदमी ने सफेद शर्ट पहनी है।

इस चित्र में एक आदमी का घर।

कांच की रेलिंग बनी है।

पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में कुछ लड़के नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में एक आदमी दिखाई दे रहा है।